मच्छर भगाने की स्प्रे ले सकते हैं और हम पीछे में पेड़ भी दिख रहे हैं।

नौ बज रहे हैं नौ साढ़े नौ बज रहे है।

ये हमें एक स्कूल दिखाई दे रही हैं यहाँ शामलाल की चंट बच्ची पढ़ती हैं।

ये मेरे खयाल से गढ़माता की फोटो है यहाँ बहुत सारी।

गुड्स की गड़िया है इसी में समान इम्पोर्ट एक्सपर्ट होता है यहाँ।

स्कूल जो है चल रही होगी वहां बहोत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होगे।

ऐसे झगड़ा चलते रह रहे।

ये एक खदान दिख रही है कोयले की जहाँ हमे बहुत सारा कोयला दिखाई दे रहा हे ये।

यहाँ कोयला हो रहा है यहाँ बहुत धुआँ हो रहा है।

यहाँ हमें एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा हैं यहाँ दो चेयर हैं एक कारपेट हैं एक अ।

क्योंकि गन्ने वहां बहुत उगाए जाते हैं बहुत ही शानदार नजारा दिखाई दे रहा है हमें।

घर टाइप बना हुआ है स्कूल के पीछे पेड़ हैं पेड़ ही पेड़ हे ऑक्सीजन तो बहुत है।